और गम की बोटल भी है और एक सीढ़ी लगी है फिटिंग के बाहर।

यह एक डेल स्टोर है जिसमें इसमें डेल के कंप्यूटर मिलते हैं।

और इसमें एक नीचे मोर भी है लगा।

और राधा कृष्ण के हाथ में एक बांसुरी है।

एक डाइनिंग रूम है जिसमें मेज़ रखी है और एक गिलास है मेज के ऊपर दो कुर्सियां हैं।

कहीं कहीं कहीं दो आदमी बैठे एक औरत है।

और एक गले में स्कार्फ गिरा हुआ है पीले रंग का।

घने जंगल में एक मोर बैठ हुआ है।

इसके लाई इसकी बराबर में जो लाइटे लगी हुई है।

यह बस स्टैंड है और ड्राइवर साहब अपनी बस में चढ़ रहे हैं एक आदमी बसों के बीच में खड़ा है और एक मोटरसाइकिल पे जा रहा है इधर बराबर साइड में चिनाई का काम चल रहा है।

और इसमें डेकोरेशन के लिए ऊपर भी रखा है डेकोरेशन लाइट भी लगी है बड़ी एल_सी_डी लगी है फैन हैं।

और कोचिंग सेंटर की एक दीवार पर फैन लगा हुआ है तस्वीर है और थोड़ी सी फिटिंग हुई है।

ये दीवार है उसमें एक गेट लगा हुआ है लाल रंग का।

यह एक डॉक्टर का कक्ष है जिसमें डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और नर्स उनके पास में खड़ी हुई है और उनकी।